मछली बेच रही हैं मछली बहुत अच्छा बेचती हैं ये।

और ये नदी बहुत शांत भी लग रहा है और इस नदी से उस पर आप जा कर झारखंड में गिर जाएंगे।

और इसका चमक-दमक होता है और ये काफी अच्छे तरीके से काम आती है कुर्सी को होता है ये सिल्वर कलर का है और पीछे लोग खड़ा हो जाते है और इसमें काफी आशीर्वाद देते है जो की बहुत सुन्दर बात है ये हमेशा लोगों को ध्यान रखना चाहिए ।

विशाखा डेयरी पार्लर है और विशाखा डेयरी पार्लर का ये खास बात है की ये लोग अपना ही प्रोडक्ट बनाकर बेचते है बाई ऑर्डर फ्रेश क्रीम करके ऐसा करके बनाया है डेयरी में काफी मेहनत है और काफी फायदा भी है क्यूंकि ये वॉल्यूम पे काम करता है।

सरकारी ऑफिस है जहां कि बहुत बड़ा बनाया गया है और इसका फर्श एकदम आईने की तरह चमक रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है और एक आदमी फोन पे कुछ काम कर रहा है मास्क भी पहने हुए है।

स्कार्पिओ है जिसका बी.आर. ज़ीरो सेवन अड़सठ बानवे करके नंबर है जो काफी अच्छा है।